ये एक अअ ब्रिज की फोटो है और ये ब्रिज जो है वो यहां का नहीं लग रहा है बाहर का है।

झाड़ू नहीं किया है बस--